और उसके बगल मे एक कि जंगल है जीसमे हरे-भरे ए- पेड-पौधे है।

एक खाने का टेबल है जिस के उपर एक कढ़ाई रखी है कढ़ाई के उपर एक ट्रे है ट्रेन मे ये जलेबी रखा हुआ है।

एक स्टोर है जिस स्टोर मे कपबोर्ड बनी हुई है।

आस नीले कप नीले कपडे के ऊपर रंग बिरंगे छोटे छोटे टुकड़े मे कपडे रखे हुए है एक पन्नी मे कूछ कपड़ा--

एक बड़ा सा मैदान है जिस मैदान मे हरे घास जमीन हुए है और छे-सात लकड़े बैठ के योगा कर रहे है।

और कुछ सोफो सोफा पत्ती भी है एक लड़की एक लड़की जा रही है।

एक बड़ा हॉल है जिस हॉल मे अगल बगल परदे दिवारे है और उपर लाइट की गई है।

पंखे ए_सी लगी हुई है और नीचे सब चेअर सफेद कलर मे बिछी हुई है।

ऐ और एक बैठा हुआ है और एक और कुछ टोपरी और कुछ डलिये रखी है।

अलमीरा है ये लाइट है और कपबोर्ड में किताबे है।

छोटा सा रूम है जो रूम मे ये दीवारो मे कुछ चित्र लगे हुए है।

और एक टेबल है जिस टेबल के ऊपर सेनिटाइज़र रखी हुई है एक चौको एक चिप चिप्स भी रखी हुई है।

अगल बगल हरे पेड़-पौधे है और कुछ--

कुछ लकड़ी के भी है ऐ और निचे ऐ निचे जमीन मैं कुछ स्टील के बर्तन रखे--